यह एक मॉल है मॉल में लोग घूमने के लिए जाते है और शॉपिंग करने के लिए जाते है मॉल में अलग - अलग प्रकार के हर चीजे मिलती है।

अब देखने को मिलता है और यह बहुत दर्शनीय होते है लोग इसे देखने के लिए दूर - दूर से आते है यह पुराने जमाने का पूर्वर्जो के जमानो का कलाकारों का --

अपनी दोस्ती यारी अपने बच्चो के साथ अपनी फेमली के साथ घूमने के लिए जाते है।

यहाँ बच्चे कार्यक्रम दिखा रहा है जैसे पंद्रह अगस्त हो गया है छब्बीस जनवरी हो गया है यहाँ बच्चे अपना कलाकारी दिखाते है ऐसे यहाँ कार्यक्रम हो रहे है जिसे बहुत लोग--